eclipse का उपयोग करके errors और debugging tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
साधारण java program लिखते समय संभावित एरर क्या हैं
उन errors की पहचान कैसे करें और eclipse का उपयोग करके उन्हें कैसे सुधारें
इस tutorial के लिए हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि
eclipse में java program को कैसे बनाएँ और रन करें
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाइ गई हमारी website पर जाएँ
एक साधारण java program में विशिष्ट errors हो सकती हैं
semicolon ; छूटना
message के आसपास double quotes छूटना
file का name और class का name बेमेल होना
और print statement को lowercase में टाइप करना
हम एक program लिखेंगे और फिर इनमें से प्रत्येक errors को बनायेंगे और देखेगें कि eclipse में we होता है
यहाँ हमारे पास eclipse ide और helloworld tutorial के लिए उपयोगित project है
हम project में एक नया class बनायेंगे और इसका उपयोग new class में करेंगे class को error free name we और मेथड stubs public static void main चुनें
package explorer को minimize करें comments को हटाएँ और कुछ errors के लिए print statement जोडें
eclipse में जिस line में error है वह बाईं margin पर red cross चिह्न के साथ दिखाई देगी
इस case में system out println line में एक एरर्स है और इसलिए इसके बाईं ओर red cross चिह्न है
errors की सूची cross चिन्ह पर mouse घुमाने से प्रदर्शित होती है
पहली error प्रदर्शित होती है syntax error insert semicolon to complete block statements
ऐसा इसलिए क्योंकि हमें program के प्रत्येक statement को semicolon के साथ समाप्त करना है
अतः statement के अंत में semicolon को प्रविष्ट करें
ctrl s के साथ file सेव करें
ध्यान दें कि जैसे ही हम semicolon जोडते हैं और file को सेव करते हैं पहली error चली जाती है
अब वहाँ केवल एक error है जो है hello world cannot be resolved to a variable जिसका अर्थ है कि console पर कोई भी message दर्शाने के लिए message में double quotes सम्मिलित होना चाहिए
बिना quotes के java सोचता है कि helloworld variable का name है
add message के पहले और बाद में double quotes को जोडें
ctrl s से सेव करें हम देख रहें हैं कि red cross चिन्ह चला गया है और program error मुक्त हो गया है अतः program को red करें और देखें कि we होता है
java applications के run में run करें
हम देख रहें हैं कि message console पर printed हो गया है
अगली error देखते हैं
यह file का name और class का name बेमेल होने के कारण होती है
यह आमतौर पर eclipse में नहीं होता है
यह इसलिए क्योंकि हमने file को बनाने के लिए new class wizard का उपयोग किया है और
इक्लिप्स स्वतः एक file बनाता है
लेकिन यदि हम eclipse के बाहर java file को बनाते हैं और इसे project से जोडते हैं तो उसमें error हो सकती है
अतः class के name को बदलकर error को संतुलित करें
चूँकि java casesensitive है अब class का name और file का name मेल नहीं खाते हैं
ध्यान दें कि बाईं margin पर red cross चिह्न है
और error message है the public type errorfree must be defined in its own file
इसके अलावा ध्यान दें कि शब्द errorfree लाल रंग से चिन्हांकित है
eclipse इटेलिजेंट्स fixes प्रदान करता है और यहाँ हमारे पास दो fixes उपलब्ध हैं
पहला है rename compilation unit to errorfree java
दूसरा है rename the type to errorfree
fix जिसे हम देख रहे हैं वह दूसरा है और हम देखते हैं कि एक बार आप file का नाम बदल देते हैं class error मुक्त हो जाता है error यहाँ missing है
दूसरी error print statement में typing की गलती के कारण होती है
बडे s को छोटे s में बदलें
हम देखते हैं कि वहाँ red cross चिन्ह है
और error message है system cannot be resolved
इसका अर्थ है कि java system name द्वारा class या object या variable की अपेक्षा करता है
लेकिन यहाँ code में system object जैसे कुछ नहीं है
अतः संभावित fixes देखें
यहाँ 11 fixes हैं जिनमें से fix जिसे हम देख रहे हैं वह 8th option है
change to system java lang
आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसे बडे s में बदलते हैं error हट जाती है
इस प्रकार eclipse का उपयोग करके java में errors को पहचानते हैं और उन्हें सुधारते हैं
यह हमें tutorial के अंत में लाता है
इस tutorial में हमने देखा
java program लिखते समय विशिष्ट errors क्या हैं और
eclipse का उपयोग करके उन्हें कैसे पहचाने और सुधारें
इस tutorial के लिए नियत कार्य के रुप में नीचे दिए गए code में एरर ज्ञात करें और उन्हें fix करें
spoken tutorial project के बारें में अधिक जानने के लिए
निम्न link पर उपलब्ध ट्यूटोरियल को देखें यह project को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करने और देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी details हैं अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ